यहाँ पे देखिये ये विद्यालय है।

यहाँ पे प्याज़ और टमाटर रखा हुआ है निचे जमीन पे और एक बुजुर्ग महिला जा रही है एक बुजुर्ग अ --

गैस का बाटला भी दिख रहा है इधर पे।

फूल भी लटके हुए है इसपे घंटी भी लटकी हुई है।

उन्ही का इमेज शेयर किया गया है।

अब कुछ कोबस स्ट्राइवी का भी दिख रहा है इस में आसमान दिख रहा है।

साथ में हेलमेट भी लगाऐ है और सामने एक फोर व्हीलर दिख रही है एक और आदमी दिख रहा है पेड़ दिखाई दे रहा है।

सोफे पे बेग रखा गया है। सामने भी टेबल रखा है जिसपे एक जेन्स लड़का खड़ा है ऊपर लाइट्स जल रही है दीवाल भी काफी अच्छे से डेकोरेट किया गया है।

ये गार्डन का एक शो पीस समान है ।

यहाँ पे देखिये बिल्डिंग है। बिल्डिंग में ढेर सारे खिड़कियाँ है।

एक छोटा बोर्ड है एक बड़ा सा बोर्ड है और चैनल लगा हुआ है चैनल खुला हुआ है अंदर टेबल्स दिखाई दे रही हैं ।